अभी यहाँ देख रहै है जो की हैयर कटाई किया जाता है और यहाँ देख रहै एक आदमी जो है हैयर कटा के लिया बैठा हुआ--

जैसा की आप यहाँ देख रहे हैं यह जो है की मधुर मिलन मेरिज हॉल है यहाँ पर जो है की दो आदमियों को मिलाया जाता है और उसका शादी करवाया जाता है और देख रहे हैं की ये जो है की देखने में बेहद खूबसूरत और बाहर में जो है की फूल के कुछ सजाए गए हैं।

साइड में देख रहे है एक मकान भी और इसके साइड में पेड़ भी लगी हुई है और वहाँ देख रहे एक पानी का टंकी भी दिख रहा और वहां पर एक खम्बा भी दिख रहा और यहां का नजारा भी बेहत ही खूबसूरत है।

ओपो जो है ये एक जैसा आप लोग देखा रहे है यहाँ एक ओपो मोबाइल कम्पनी है और यहाँ देख रहे है यहाँ जो है मोबाइल जो है की अच्छे सस्ते दाम में और बढ़िया मोबाइल मिल रहा है।

मंदिर को कितने अच्छे से सजाया गया है। यहाँ जो है कि भक्त आकर के पूजा अर्चना करते हैं और माता से अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए विनती करते हैं और माता उनकी इच्छा को पुड़ी पुड़ी कर देते हैं।